रोड के पास में बहुत सारे लोग--

और अंदर की ओर ढेर सारी किताबें नजर आ रही है और बाहर कुछ लोग भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

सुंदर मालवों का डेकोरेशन हो रहा है और ऊपर एक घंटा भी दिखाई दे रहा है।

जिन्होंने सर पर लाल कलर के पगड़ी बांधी गई है।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

यहाँ पर सीढ़ी भी नजर आ रही है और कांच का गेट और खिड़की भी दिख रही हैं।

दीवाल पर एक टी_वी लगाया हुआ है और सामने की ओर खिड़की भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर--

सामने दुकाने नजर आ रही है और बड़े बड़े अक्षरों में--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक--

रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर ये पैसेंजर --